बगल में कंप्यूटर रखी गई है और कांच लगाए गए हैं भूरे रंग के बगल में कांच लगी हुई है हरे रंग की घास उगी हुई है बगल में एक बड़ा सा पर्दा--

और पेड़ है जो हरे रंग के पत्ते सफेद और नीले रंग के आसमान है जो काफी बड़ा भालू है नीचे एक साइड पे सूखे हुए पत्ते पड़े हुए हैं।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

एक बड़ा सा मूर्तियां सफेद रंग की दीवारें हैं चारों तरफ जिस पर लाइट लगी हुई है पीछे की साइड पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ लाल रंग के और सफेद रंग के सफेद और नीले काले रंग के आसमान है बगल से एक आदमी आ रहा हुआ है।

बहुत सारी लाइटें लगाई गई है जो सफेद रंग की और नीले रंग की लाइटें हैं और कुछ छोटे-छोटे पेड़ हैं जो हरी भरी पत्तियां हैं।